लाल अ ऐश कलर का हल्क कलर का --

सामने में एक का एक झाड् है।

अन्दर में कुछ पेट दिख रहा है। साइड में कुछ पेट दिख रहा है।

एक ऑफिस दिख रहा है दो लैपटॉप दिख रहा है एक टी.वी. दिख रहा है।

आ आ कुछ लड़का पेंट कर रहा है दिख रहा है एक स्वीच का बोर्ड दिख रहा है।

एक बड़ा सा मार्ट दिख रहा है। ऊपर में आसमान दिख रहा है।

ऑरेंज कलर का एक ड्राम दिख रहा है।